देखा था की ये जगह का का है श्री राम थी और ये जगह आदमी मने मुखे बगरा है अउ ए जग ले --